जहाँ पर प्रधानमंत्री जैविक खेती लिखा हुआ है उसके नीचे प्रधानमंत्री का सपना जेहेर मु --

स्कूटी है जो की पुरूष चला रहे है।

और पेड़-पौधे हैं आस-पास ग्राउंड में ग्रीन का --

और मिरर है ब्लैक कलर के शीशा है।

छत का कलर व्हाइट है।

यहाँ पर बहुत सारे फूल्स है जिसमे गुलाब है।

इस दृश्य में होटल दिखाया गया है जिसका नाम होटल पायल है।

दृश्य में बहुत सारे फोटोस को दिखाया गए है जहाँ पर --

एंड डेस्क है वॉलेट लिखा हुआ है वाइट कलर से ब्लू कलर के --

इस दृश्य में कारों को दिखाया गया है।

फ्रिज है जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स हैं कुर्सियाँ हैं बेंचेस है।

घर घरो की दीवारों का कलर सफेद है खिड़कियां है।

और मिट्टी है पाइप है।